ये एक चर्च है जो कि बहुत ही बड़ा है और रेड कलर का है व्हाइट कलर में है और जिसके बाहर ढेर सारे लड़के और लड़कियां आदमी औरत ढेर सारे लोग हैं और यहाँ पे पेड़ भी दिख रहा है।

यहां पर तीन लड़कियां स्टेज पे खड़ी हैं।

एक आदमी हातो में थैला लेकी खड़ा है ऊपर दो पोस्टर लगे हैं कोको-कोला की ऐ_सी भी दिख रहा है और सड़के पास खड़ा है सड़क बी दिख रही है।

कांच लगे हुए हैं कम्प्यूटर्स रखे हुए दिख रहे हैं और वो भी कुछ लिखा हुआ दिख --

यह एक सब्जी मंडी है जहां पर किराना दुकान और सब्जी की एक दुकान लगा कर बैठे है और दो औरतें बैठे हैं।